और जैसे दुर्गा माता की किताब लक्ष्मी माता की भजन आरती--

नेकलेस बैंगल्स दिखाई दे रहे--

दिखाई दे रहा है जहां पर एक बड़ा गेट --